रेड कलर की बाउंड्री और वाइट कलर की बाउंड्री है।

और यहां पर एक बहोत बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है।

और यहां पर बहोत सारा कोयला पड़ा हुआ है।

और नीचे पे फर्श पर कुछ बाल भी पड़े हुए हैं।

यहां पर एक बहुत लम्बी सी दिवाल है।

यहां पर ब्लैक और ब्राउन कलर से पेंट है।

यहां पर एक मोर कुछ बलियों पर बैठा हुआ है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है।

बहुत बड़ा सा काउंटर है जो ग्लास का है।

और इस तालाब में सिंघाड़ो के पेड़ भी लगे हुए हैं।

ऑरेंज कलर के पी_वी_सी पैनल से डिजाइनिंग है।

यह एक पानी की छोटी सी झील है।

ताकि धूप ना सके और छांव बनी रहे--

यहां की मिट्टी बहोत सुखी और यहां की मिट्टी बहोत भूरी है।

यह एक हिंदू धार्मिक रैली निकल रही है यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

यह एक पिकनिक स्पॉट है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे आधे और घूमे लगे हुए है।

और यहां पर एक बगल में पार्क भी है।

यह एक देखने में बहुत बड़ा सा पार्क लग रहा है।

यहां पर आर_सी_सी की रोड पर पानी पड़ा हुआ है।

और यहां पर कुछ ताड़ के पेड़ भी हैं।

यह एक कैफे हैं। यहां पर पजल्स टाइल्स लगी हुई हैं।

और यहां पर बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

और इस पुल पे व्हाइट कलर की बाउंड्रीज भी है।

और यहां पर एक छपरा टाइप में भी पीछे पड़ा हुआ है।

एक ग्रीलो में छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए है।

यहां पर एक माताजी की विशाल सी मूर्ति है।

और यहां पर रेड कलर का पेंट है।

और यहां पर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे है।

और यहां पर रेड और ग्रे कलर के टाइल्स की रोड बनी हुई है।

और यहां पर एक ग्रीन कलर का डस्टबिन है और एक सिल्वर कलर का डस्टबिन है।

और यहां पर एक सोलर पैनल भी है।

यह एक बहुत बड़ा सा पार्क है और यहां पर छोटी छोटी घास भी लगी हुई है।

इस मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत सारे पिलर्स भी लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ पन्नियों पर मछलियां रखी हुई हैं जो पन्नी नीले कलर की है।

यह एक जिम है जहां पर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे है।

यहां पर बहोत सारे डंबल्स रखे हुए हैं।

और यहां पर ब्लैक कलर की मशीनें और रेड कलर के स्टूल्स भी हैं।

यहां पर एक ब्लोरो और एक समान लोडर गाड़ी भी है।

जो पैसेंजर्स चढ़ने उतरने के लिए होते हैं।

और यहां पर एक आदमी फल खरीद रहा है।